यहाँ पे आकाश साफ देखा जा सकता है पीछे एक बड़ा सा पूल दिखा जा सकता है इसके ऊपर कुछ जालीदार जैसे लाइनिंग बनाए गए हैं दो बड़े-बड़े पोल देखे जा सकते हैं

आगे कुछ गाड़ी देखे जा सकते हैं कुछ महिलाएं देखी जा सकती हैं पीछे कुछ हरे-भरे पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं सबसे पीछे बिल्डिंग देखा जा सकता हैं इसकी खिड़कियाँ भी देखी जा सकती हैं।

आगे बहुत लंबे-लंबे कर कर नीचे तक पंख टंगे हुए हैं जिनका कुल सफेद दिखाई दे रहा है बगल में दो तीन बड़े-बड़े पोल के जैसे गुंबद देखे जा सकते हैं जिनका कलर सफेद दिखाई दे रहा है आगे कुछ रखा हुआ देखा जा साकता हे।

जा सकते हैं नीचे भी धर धरती देखी जा सकती हैं जिसके ऊपर कुछ रेट के टीले देखे जा सकते हैं ऊपर ब्लू कलर का आकाश साफ देखा जा सकता हैं जिसमें कुछ सफेद कलर के बादल भी देखे जा सकते हैं।